ठेठर नजर आ रहा है ठेठर के अंदर काफी सारी लाल कलर की सीट नजर आ रही है काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है काफी जन बेढ़े है काफी जाने खड़े नजर आ रहे है।